पर्ल में डेटा स्ट्रक्चर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में उपलब्ध डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहे हैं
मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा
आप अपनी पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
कमेंट्स लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जानकारी एक अतिरिक्त लाभ होगा
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल में 3 प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं
स्केलर अरै हैश जिसे असोसिएटिव अरै भी कहते हैं
स्केलर इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू नियंत्रित करता है
डेटा टाइप स्ट्रिंग नंबर डबल आदि हो सकते हैं
यह एक अरै या हैश के लिए रिफ्रेंस भी नियंत्रित कर सकता है
नोट पर्ल में रिफ्रेंस आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे
डेटा स्ट्रक्चर का स्केलर प्रकार वेरिएबल को घोषित करने के लिए सरल है
count 12 सेमीकॉलन string सिंगल कोट्स में आई एएम स्केलर ओएफ टाइप स्ट्रिंग सेमीकॉलन हम निम्न ऑपरेशन्स स्केलर पर कर सकते हैं
इसके लिए वैल्यू निर्धारित करना
एक स्केलर दूसरे के लिए निर्धारित करना
नंबर टाइप के स्केलर्स पर गणितीय ऑपरेशन्स करना जैसे जोड़ घटाव आदि
स्ट्रिंग स्केलर पर स्ट्रिग ऑपरेशन्स जैसे कंकेटेनेशन सबस्ट्र आदि
अब स्केलर डेटा स्ट्रक्चर का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट स्केलर्स डॉट पीएल स्पेस और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में स्केलर्स डॉट पीएल फाइल इन खोलेगा
स्क्रीन पर प्रदर्शित निम्न कोड टाइप करें
यह स्केलर के लिए डिक्लेरेशन और असाइंमेंट है
यह गणितीय ऑपरेशन्स हैं जिन्हें स्केलर के नंबर टाइप पर किया जा सकता है
यह स्ट्रिंग ऑपरेशन्स हैं जिन्हें स्केलर के स्ट्रिंग टाइप पर किया जा सकता है
सबस्ट्र पर्ल फंक्शन है जो आउटपुट के रूप में स्ट्रिंग का भाग प्रदान करता है
यहाँ इंडेक्स 0 स्ट्रिंग की शुरूआत को निर्दिष्ट करता है अर्थात जहाँ से हम स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं
और 11 आफसेट निर्दिष्ट करता है जहाँ तक हम स्ट्रिंग को आउटपुट रखना चाहते हैं
फाइल को सेव करने के लिए ctrl एस दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्केलर्स डॉट पीएल के रुप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर प्रदर्शित आउटपुट चिन्हांकित होता है
अब पर्ल
में अरै डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं
यह एलिमेंट्स की सूची है
एलिमेंट्स स्ट्रिंग नम्बर आदि हो सकते हैं
इसमें एक इंडेक्स होता है जो अरै पर विभिन्न ऑपरेशन्स करने के लिए उपयोगित है
इंडेक्स 0के साथ शुरु होता है
अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भिन्न यहाँ इसे पर्ल में उपयोग करने से पहले एक अरै या इसकी लंबाई घोषित करने की आवश्यकता नहीं है
पर्ल अरै इसमें एलिमेंट्स जोड़ने या घटाने के अनुसार फैलता या कम होता है
अरै लिखने के लिए सिंटेक्स हैः एटी थे रते वेरिएबलनेम स्पेस इक्वल टो स्पेस ओपन ब्रैकेट एलिमेंट्स की सूची कॉमा के साथ पृथक क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
अब अरै डेटा स्ट्रक्टर का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट पर्लरे डॉट पीएल स्पेस और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में पर्लरे डॉट पीएल फाइल खोलेगा
स्क्रीन पर दिखाई देने के अनुसार निम्न कोड टाइप करें
यह नम्बर अरै है जिसमें नम्बर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं
यह स्ट्रिंग अरै है जिसमें स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं
इस अरै में दोनों नम्बर और स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं
यह उदाहरण पर्ल में विभिन्न प्रकार के अरैज दर्शाता है
इस प्रकार हम पर्ल में अरै प्रिंट कर सकते हैं
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल पर्लरे डॉट पीएल के रूप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है
अब पर्ल में हैश डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं
हैश को वैकल्पिक रूप से असोसिएटिव अरै कहते हैं
यह के वैल्यू पैर डेटा स्ट्रक्चर है
के हैश में विशिष्ट है
यदि समान के फिर से जुडती है तो उस के की वैल्यू नयी निर्धारित वैल्यू द्वारा निरस्त हो जायेगी
वैल्यू समरुप हो सकती है
यह किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू भी रखता है
हैश का सिंटेक्स है परसेंटेज वेरिएबल का नाम स्पेस इक्वल टो स्पेस ओपन ब्रैकेट एंटर दबाएँ
सिंगल कोट् के का नाम सिंगल कोट स्पेस इक्वल टो ग्रेटर थान सिग्न स्पेस वैल्यू कॉमा एंटर दबाएँ
सिंगल कोट के का नाम सिंगल कोट स्पेस इक्वल टो ग्रेटर थान सिग्न स्पेस वैल्यू एंटर दबाएँ
क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन अब हैश डेटा स्ट्रक्चर का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट पर्लहैश डॉट पीएल स्पेस और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में पर्लहैश डॉट पीएल फाइल खोलेगा
स्क्रीन पर प्रदर्शित निम्न कोड को टाइप करें
यह हैश विषय में प्राप्त अंकों को दर्शाता है
यह उदाहरण हैश का उपयोग दर्शाता है
अब देखते हैं कि हैश को कैसे प्रिंट करें
अभी के लिए ध्यान दें जिस तरह मैनें हैश को प्रिंट किया है
पूर्ण विवरण आगे वाले ट्यूटोरियल में दिया जायेगा
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
फिर टर्मिलन पर जाएँ और पर्ल पर्लहैश डॉट पीएल के रुप में पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके
स्केलर अरै और पर्ल में हैश डेटा स्ट्रक्चर यहाँ आपके लिए नियत कार्य है स्केलर वेरिएबल को घोषित करें
इसके लिए फ्लोट टाइप की वैल्यू निर्धारित करें और फिर इसे प्रिंट करें
लाल पीले और हरे रंग के एक अरै को घोषित और प्रिंट करें
कर्मचारी का नाम और उसके विभाग के हैश को घोषित और प्रिंट करें
सुझाव एम्प्लॉयी जॉन क़ॉमा डिपार्टमेंट इंजिनियरिंग निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा